खम्भे लगे हुआ हैं वायर्स के पीछे बड़ी-बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही हैं जिनमें विन्डोस वगेरह दिख रही है बड़े-बड़े ट्रीस दिखाई दे रहे हैं स्काइ दिखाई दे रही है वायर्स दिखाई दे रहे है इलेक्ट्रिसिटी --